निचे जमीन में कारपेट बिछा हुआ दिख रहा है वहां पे कुर्सियां दिख रही है वहां पे कुछ लोग बैठे हुए दिखाई --